एक गार्डन दिखाइ दे रहा हैं।

कुछ बच्चे मैदान में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

हमें गमलो में अ तरह तरह के फुल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दे रहा है और नीचे एक मैट भी बिछा हुआ दखाई दे रहा है।

दाने पड़े हुए भी नजर आ रहे हैं और मदान में दो मंजे पड़े हैं जिसमें--

मेडिकल की शॉप भी दखाई दे रही है जिसमें एक लेडी दवाई लेती हुई नजर आ--

पौधे लगे हुए दखाई दे रही हैं।

इस पिक्चर में हमें एक पहाड़ी दिखाइ दे रही है।

होटल दिखाई दे रहा है जिसको फूलों से--

बीच हरी-हरी घास लगी हुई है।

जिसमें पेड़ पौधे भी लगे हुए देखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक जंगल दिखाई दे रहा है।

नीले रंग का नेट भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमे एक पहाड़ी दिखाई दे रही हैं जिस पर--

जिसमे बहोत सारे मकान बने हुए दिखाई दे रहे है।